केनरा बेंक का एक ऐ टी एम जो अभी बंद है | उसले ऊपर एक घर केनरा बेंक का बोर्ड लगा हुआ है।

एक फोरविलर भी नीचे डाला जा रहा है।

पुराने किले के बीच एक लड़की पहने बाल खुले सेल्फी ले रही है और उसके पीछे पहाड़ो का एक --

मैराथन का दौड़ का ग्राउन्ड जिसमे दौड़ ने के लिए अलग-अलग सभी की पंक्ति बनी हुई हैं।

घांस का एक बहुत बड़ा मैदान जिसमें किनारे-किनारे एक तरफ बहुत सारे रूम बने हुए हैं हर रूम में एक-एक --

यह एक किसी मुस्लिम गर्म से रिलेटेड घर या बिल्डिंग है।